ऊपर सफेद रंग से पेंट किया गया है।

सामने एक बस नजर आ रही है जिस रंग पीला है।

ऊपर से नीचे आने के लिए बहुत सारी सामान भी बनाई गई है।

पीछे सफेद कलर से पेंट किया गया है।

इसके ठीक सामने ग्राउंड है जिस पर छोटी छोटी घास है।

मैदान पर बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है जिसका रंग ब्राउन है।

बहुत सारे बिजली के तार भी लगे हुए हैं।

चलने के लिए भी बहोत सारी जगह बनाई गई है यहां कुछ आदमी तो कुछ औरतें भी नजर आ रही है उसके ठीक साथ छोटे छोटे बच्चे भी है।

पीछे एक आईना लगी हुई है पीछे का बैकग्राउंड नीला लाल और येलो से पेंट किया गया है।

सामने एक टूल है टूल के ऊपर एक जल का डिब्बा रखा हुआ है।

इसके चारों ओर गमले पर छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं ईसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

सामने एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है जिस पर सफेद कलर से पेंट किया गया है।

गार्डन में छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चर्च की तस्वीर है जिसमें बहुत सारी पीछे कुर्सी लगाई गई है।

पीछे आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।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

पर बहुत सारी वर्ड लिखी गई है जैसे ओक ग्रोव लॉन्ग बार एंड रेस्टोरेंट ।

हेयर ड्रायर भी रखा हुआ है उसके ठीक पीछे दो बड़ी बड़ी आईना लगी हुई है।

दीवार का रंग ऊपर सफ़ेद और नीचे ब्राउन रंग से पेंट किया गया है।

उनके ठीक सामने डेस्क रखी हुई है डेस्क के ऊपर प्लास्टिक के चम्मच--

यह एक सफेद कलर की कमरा है जिसमे बैकग्राउंड सफेद कलर से रंग गया है।